यह एक बनाया गया है सुबह यहाँ पर बहुत सारे बच्चे फुट फुटबॉल खेल रहे एवं क्रिकेट खेल रहे हैं बहुत सारे --

सड़क है यह सड़क काफी बड़ा है इस सड़क पर बहुत सारे गाड़ियाँ आती-जाती हैं।

यह सड़क है। यह सड़क काफी बड़ा है। इस सड़क पर एक गाड़ी एक बाइक खड़ी है। यह सड़क की चारो और बहुत सारी हरियाली छाई है।

यह मुरत देखने के लिए बहुत सारे आदमी की भीड़ लगे है यह यह द्वार के किनारे बहुत छोटे-बड़े पेड़-पौधे लगे है।

कौन है यह दूकान में बहुत सारे रैक लगे हुए हैं वह रैको में बहुत सुन्दर-सुन्दर तस्वीर रखे गए हैं यह तस्वीर --

इस क्लाब में दूर से सारे बच्चे बड़े यहाँ पर हिल रहे है।